यहां पास कई सारे लोग हैं जो कि--

बात कर रहे हैं यहां कई सारी पब्लिक है।

किराने की दुकान है यहां पर।

एक नदी है जोकि बहोत--

लोग खड़े हैं। हाथी के ऊपर एक व्यक्ति दिख रहा है।

ये एक रेलवे ट्रैक है।

एक रेलवे ट्रैक है और यहां पे--

कुर्सियां है ये बहोत सारे लोग हैं।